रात का समय है दो मंजिल है चॅनेलगेट लगा हुआ है मंजिल के ऊपर कुछ लिखा हुआ है साइड में दो पिलर लगे हुए है।

और सामने कुछ बिल्डिंग वगेरा है जो टूटी फूटी है और इधर साइड में कुछ ईटों की जो बनी हुई है वो भी टूटी मुटी है और स लेफ्ट साइड में भी बि वो बनी हुई हैं वो भी आधी अध्मुरी है। पीछे साइड भी बनी हुई है वो भी अध्मुरी है। नीचे फ --